नीचे में ब्लू और रेड कलर का कारपेट बिछा हुआ है।

बुक्स वगैरह कॉपी पेन पेंसिल और यहां पे ऊपर में इंजीनियरिंग ई_सी_ई ई डबल ई लिखा हुआ है।

और यहां पे उस सामने में स्टीकर चिपकाए हुए हैं जिस पर प्राइस लिखा हुआ है ऊपर में सरसो तेल नजर आ रहे हैं।

यहां पे एक बहोत बड़ा दरवाजा नजर आ रहा जो कि रखा हुआ है।

और नीचे में कुछ नंबर लिखे गए हैं और पता लिखा गया है।

और यहां पे नीचे में टेबल नजर आ रहे हैं।